और शायद का एग्जाम है और एक मैम एग्जाम ले रहा है।

यहाँं मैं देख रही हु कि रिसेप्शन पार्टी है और दो लड़की और तीन लड़के हैं।

देख रही हूँ कि ये एक आ मंदिर हैं आ जिसके बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

वो सेल्फी ले रहे है शायद रेड कलर के टीशर्ट पहनी हुई है|

अह प्लास्टिक के फ्लॉवर और आअह काम कर रहे है।

देख रही हूं कि ये एक उमरगंज हॉस्पिटल है। के बाहर लोग हैं कुछ लोग अंदर जाने के लिए --